इस तस्बीर मैं हमें घर दिखाई दे रहा है इस घर का कलर वाइट है और इसमें ग्रीन कलर भी है।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

वाइट कलर है और ग्रीन कलर भी दिया हुआ है और साथ मैं इसमें रेड कलर भी है और यहाँ पे दिवाल है दिवाल मैं अ पर्पल कलर है वाइट कलर भी है।